छत्त मे छत मे दो नल्ली दिखाई दे रही और यलो कलर का कंकाल दिखाई दे रहा है एक ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है पट्टी सागून की दिखाई दे रही है नीचे भी एक कंकाल दिखाई दे रहा--

नगर पंचायत रायगढ़ का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे ऊपर के तरफ कांच लगे दिखाई दे रहा है।

सामने रोड दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल के पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है और कुछ दूरी पर बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

एक आदमी बगल कोने मे लाल कलर की टी-शर्ट पहने खड़ा दिखाई दे रहा है सीढ़ियां दिखाई दे रही सीढ़ियों पर कुछ लिखा दिखाई दे रहा नीचे के फर्स पर व्हाइट कलर का टेटू बना--

एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग मे ऊपर सन्सेट जेसा गोल-गोल टापू बना दिखाई दे रहा --